दूर से पहाड़ दिखाई दे रहें हैं।

देखने में ये कोई पार्क लग रहा हैं।

इस पिक्चर में हमें एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा हैं।

तीन फौजी दिखाई दे रहे हैं।

पीछे दीवार पर एक व्हाइट पेज पर लिखा गया है टीचर्स डे ।

चेयर्स और टेबल भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर हमें मेज भी दिखाई दे रहे हैं देखने में ये कोई कैफे लग--

ये मॉन्यूमेंट रैड कलर में दिखाई दे रहा हैं।

इस पिक्चर में हमे बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

और साइड पर हमें दो बस भी दिखाई दे रही हैं।

और दूर से हमे पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

और पीछे हमें फ्लावर्स के साथ डेकोरेशन की गई भी दिखाई दे रही हैं।

यहां पर हमें और भी मशीनस दिखाई दे रही हैं।

इस सब्जी का नाम आलू है।